स्टेज बहुत अच्छे से सजाया गया है पीछे बहुत सारे अलग-अलग कलर‌ के फूल लगे हुए हैं ओ कुछ पत्तियां भी लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी--

यहाँ पर बहोत सारी भीड़ लगी हुई है बिच में एक गो फाउंटेन बना हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है पानी में भी लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यहाँ पर बीच में एक बच्ची खड़ी हुई है।

पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर अ दीवाले सफेद कलर की है और बैलून का कलर पीला लाल और काला है।

देख रहे है यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि य अ कच्ची सी दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारे चेंनल और खिड़कियां दिखाई दे रही है यहाँ पर एक गेट है जो की अ काला कलर का है यहाँ पर बहोत सारी गाड़िया खड़ी हुई है।

सामने एक बहोत बड़ी एल. ई. डी. लगी हुई है और उसके सामने बहुत बड़े-बड़े दो कांच लगे हुए है एल. ई. डी. के पास पे बहोत सारी तस्वीर लगी हुई है और कांच के बाजू में बहोत सारी क्रीम वगैरा रखी हुई--